पिंक है। क्रीमी कलर --

चौकलेट लगी हुई दिख रही है। काजू बादाम टाइप के दिख रहें हैं। ब्लैक भाइट कलर के --

मंदिर दिख रहा है। मंदिर में मूर्ती दिख रही है। पंखा रखा हुआ दिख रहा है। डोरी दिख रही है। एक लड़की के पैर दिख रहे हैं। पिंक कलर में--

खिड़कियां वगेरा दिख रहीं हैं। चैनल गेट लगा दिख रहा है। नीला गेट लगा हुआ दिख रहा है।